एक फोटो भी लगी हुई है।

ये एक ती स्टेशनरी एंड टेलीकॉम की दुकान है बैनर पर लिखा हुआ है फोटो स्टेट --

गाड़ियों की सर्विस सेंटर है बहुत सारी गाड़ियां यहां पर सर्विस होने के लिए--

पानी वाला कूलर भी लगा है कूलर के ऊपर एक गिलास रखा हुआ है गाड़ी का नंबर --

एक ए_सी और बहुत सारी लाइट्स भी लगी हुई हैं।

फ्रिज के अंदर रियल जूस के डब्बे थम्स अप और कोल्ड ड्रिंक लिम्का भी रखा हुआ है दही के डब्बे --

ऑफिस है ऑफिस के बाहर बहोत सारी बाइके लगी हुई है।

दुकान के अंदर बहोत सारे मूर्तियां रखी हुई है।

पानी का एक बोतल भी यहां रखी हुईं हैं।

यहां पर एक घर बन रहा है।

लाइट्स भी लगी हुई है बाहर एक रोड बना हुआ है डिवाइडर भी बना हुआ है रोड के बीच में--